और सभी लोगो ने भग्वा रंग के कपडे पेने वे है।

ये किसी ढाबे की फोटो है इसके बाहर एक वाटर कूलर लगा हुआ है।

और इसमें पांच पेड़ खड़े हुए है और साइड में तार वाला खम्बा भी है ।

और उस पे ऊपर की साइड एक पेड़ दिख रहा हे और कुछ लाइन्स गयी हुई हे वह पे लाइट की --

और इसके पीछे कुछ हरी घास नज़र आरी है।

ये किसी गुरुध्वारे का फोटो हे जिसमे एक साईट कुछ --

और यहा पे कुछ कुर्सिय रखी हुई हे वाइट कलर में--